यह एक सब्जी खरीदने के स्थान हैं जहाँ पर आप फॉर यू सर ही सब्जियाँ खरीद सकते हैं अपना सामान खरीद सकते हैं जैसा कि आप को टेबल पर न-- पर दिखाई--

अअअ पानी दिखाई दे रहा है और पेड़ और दिखाई दे रहे है वे बहुत ही सुंदर दृश्य है।

यह किसी रेस्ट हाउस की तरह दिखाई दे रहा हैंइसके आस पास बड़ा लगे हुए हैं और चारों तरफ इसके लगे हुये हैंयह बहुत सुंदर बिल्डिंग दिखाई देता हैं जी जिसमे रात का समय हैं यहाँ पर बहुत सारे लाइटे दिखाई दे रहा हैं।

पत्थर के बने हुये कलाकृति हैंयह बहुत ही पुराने काल का हैं जहाँ पर लोग आते हैं और पूजा व्यसट करते हैं ।